ये जिम जैसा है शॉप और ये व्यायाम करने का मशीन भी है और एक लड़का है फोटो काढ़ता है और जिम फोटो में --

और एक बच्चा ब्लू ड्रेस मे और सब ग्रीन कलर मे है और बच्चे सारे डिज़ाइन बनाते है।

यह ब्रिज मे लाइट व्हाइट लगे है और कोन इंसान और व्हाइट लाइट बहुत सुंदर और बड़े से डब्ल्यू पि दिखता है और

ये कैनरा बैंक ऑफ़ ब्रांच है। ओर दिखता है। ओर एसमे भी है। और शठर भी है। और ऑफिस मे इसमे अंदर जानेका रास्ता है।